जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये दिन का समय है मेरे सामने कोई सरकारी दफ्तर नजर आ रही है दफ्तर में उस पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी मनाते हुए नजर आ रहे हैं लोग--

और उसके पीछे बहुत सारे जंगल नजर आ रहे हैं जिसके आगे एक बोर्ड नजर आ रही है जिसका रंग नीला है उस पे वाइट कलर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

और उसके सामने एक मोड़ नजर आ रहा है जिसका रंग सादा है और उसका पंख का रंग गुलाबी में है वाइट में पंखों का रंग है बहुत--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये दिन का समय है और मेरे सामने एक होटल नज़र आ रही है जिसका बैनर लगा हुआ है जिस पर येलो कलर का लिखा हुआ नजर आ रहा है वाइट कलर का है।